साइड मे एक वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

होटल के सामने मोटर साइकिल की पार्क दिखाई दे रहे है अंदर की तरफ जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है।

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में बीच में बुद्ध जी भगवान जी बैठे दिखाई दे रहे है उनके दोनो तरफ़ पेडो में ऐसी सजावट दिखाई दे रही है।

आगे दो खंबे दिखाई दे रहे है खंबे से थोड़ी दूरी पर एक आरती रखी दिखाई दे रही है एक मिट्टी का बर्तन रखा दिखाई दे रहा है उसके साइड में टेबल --

सामने दो आदमी दिखाई दे रहे है एक आदमी फोन पर बात करता हूआ दिखाई दे रहा है एक आदमी माक्स लगाकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने डस्टबिन दिखाई--

एक दीवाल दिखाई दे रही है दीवार में तीन जैसा दिखायी दे रहा है ऊपर तार की लाइनिंग दिखाई दे रही है सामने कुछ कचरा डाला हुआ दिखायी दे रहा है।

मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है लड़की के पीछे एक पर्दा दिखाई दे रहा है पर्दा काले कलर का दिखाई दे रहा है उसमें स्टार लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक खंडर दिखाई दे रहा है खंडर मैं कुछ पत्ते दिखाई दे रहे है सामने बहुत सारी जाली-जाली दिखाई दे रही है जो गेट है उसमे ईटे लगी हुई दिखाई दे रही है।

अंदर की तरफ रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर बहुत सारा कॉर्नर में कचरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आ मुझे एक दूकान दिखाई दे रही है फूलो की दूकान है जिसपे बहुत सारे गुलदस्ते दिखाई दे रहे है कुछ पैकेट में पैक दिखाई दे रहे है कुछ लटके हुए दिखाई दे रहे है।

खंडो के सामने कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर पंखा दिखाई दे रहा हैं सामने हैं कुछ फोटोस लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।